ये एक पार्क है इसमें बहुत सारे लोग हैं तिरंगा या झंडा लगाया हुआ है एक बन आदमी एक आदमी को मास्क लगाया हुआ है चश्मा लगाया हुआ है और उसको एक्सरसाइज करवा रहे है या पैर खींच कर सीधा कर रहा है।

और पेड़ सारे इसकी व्हाइट कलर से की की गई है और सुंदर लग रहा है ।

पैलेस है इसमें गणेश भगवान की मूर्तियां लगी हुई है कुर्सियां बहुत सारे लगे हुए है तीन-चार आदमी बैठे हुए हैं।